जो कि हरे रंग का है और खुला हुआ है उसके बगल से एक महिला गुजर रही है।

व उसके नीचे एक और बोर्ड लगी हुई है और इसके सामने से एक पीली रंग की वैन गुजर रही है।

इस तस्वीर में एक व्यक्ति बाइक को लेके पैदल जा रहा है।

लेफ्ट साइड में बिल्डिंग भी बनी हुई है जो की वाइट रंग की है।

में एक बच्ची अपने अंकल के साथ अंदर जा रही है।

यह तस्वीर किसी घर के मुख्य द्वार की लग रही है इसके अंदर एक आदमी खड़ा है ।

और इस मशीन का रंग काला है जो लोहे से बना हुआ है और इसकी सीट लाल कलर की है।

इसमें छे बच्चे दिख रहे हैं जिसमें से पांच बच्चा एक साथ बैठके कुछ कर रहा है और एक बच्चा साइड में है।

इस क्लास में बहुत सारे बैंच लगे हुए है जो कि लोहे तथा तख्ते से बने हुई हैं।

दो आदमी व्हाइट टीशर्ट में आगे की ओर बढ़ रहा है एक आदमी छत पे है जिसके बगल में छतरी है।

पीले रंग की फुल लगी हुई है और इसके साइड में तख्ते के बेंच पर बहुत सारे प्लास्टिक के टब भी रखे हुए हैं।

गुंबद के साइड में एक लंबा सा मीनार बना हुआ है।

उसके सामने पांच लोग खड़े हैं और महिला के ऊपर पीले रंग की पन्नी से बनी हुई एक छत भी है।

उसके बगल से तीन आदमी जा रहे हैं उसके साइड में एक व्यक्ति खड़ा है।

यह तस्वीर किसी कॉफी शॉप का लग रहा है।